एक ऑरेंज और ग्रीन की कलर की है और ये जो रूम है ये ऑरेंज कलर का है बहोत सारी बाइक्स यहाँ पर खड़ी हुई है और ये रूम बहोत अच्छा लग रहा है ये बहोत अच्छी और बहोत अच्छी बाइक --

यहाँ पे एक ढाबा जैसा फोटो दिख रहा है और ये जो शॉप है बहुत अच्छी है ऑरेंज कलर के इसपे कलर किया हुआ है और जो इसका बोर्ड है ऑरेंज कलर का है और यहाँ पे काफी सारा खाना पकाने का समान रखा --

और ऐसा लग रहा है इन्हें धोकर रखा गया है और सामने की तरफ हेंगर में व्हाइट कलर की टी-शर्ट्स लगी हुई है और यहाँ पे बोहोत सारे कपड़े रखे हुए है अंदर साफ़ -सफाई का बोहोत ध्यान रखा गया हैं।